पिंक कलर मे दिखाई दे रही है और बहुत सारी मूर्तिया रखी दिखाई दे रही है जो सारी फूलों की मालाए पहेने हुए दिखाई दे रही कुछ लड्डू भी रखे दिखाई दे रहे केला रखे दिखाई दे रहे और एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

फटने साब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के सामने एक ग्राउण्ड दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान रंगीन दिखाई दे रहा--

बहोत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में बहोत सारी नाव दिखाई दे रही है बहोत सारे झंडे लगे दिखाई दे रहे है नाव में बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

सीडियाँ लगी दिखाई दे रही और एक ड्राम दिखाई दे रहा है जिसमे एक आदमी फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में एक ऐसी लगी दिखाई दे रही है सोफे लगे हुए दिखा दे रहे हैं हॉल का कलर थोड़ा पिंक पिंक सा दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर गुब्बारे और रिबन लगी दिखाई दे रहे हैं।